यहाँ एक बोहोत बड़ा मैदान है जिसमे बोहोत सारे लोगो ने काले सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है वही पीछे बोहोत बड़े-बड़े पहाड़ है।

और बहुत बड़ा मैदान है जिसमे बहुत बड़ी बड़ी इमारत बनी हुई है ईमारतो का रंग सफ़ेद नीला--

एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुवा है जिसका रंग लाल है और ऊपर आसमान है जिसका रंग नीला और सफेद है।